जिसमें अ फूलों की कई सारी मलाएं लटकी हुई हैं।

पीछे भगवान बुद्ध की सफेद कलर की मूर्ति रखी हुई है।

गेट के ऊपर आधार का सिंबल बना हुआ है और आधार लिखा है।

यह एक इंडोर गेम्स का कमरा नजर आ रहा है।

को सपोर्ट करने के लिए कई सारे थमले लगे हुए है।

रस्सी पर कई सारे स्नैक्स के पैकेट और मैगी लटकी हुई हैं।

कई सारे घास फूस दिखाई दे रही है।

दुकान के ऊपर राय ग्यारह स्टार मॉडल शॉप मवेशी बाजार लिखा हुआ है।

जीने के ऊपर एक भव्य भवन दिखाई दे रहा है।

दुकान में कई तरीके के आर्टिफिशियल फूल रखे हुए हैं।

जमीन पर ह ल्के हरे रंग की घास नजर आ रही है।

गुफ़ा के बाहर बहुत सारे पत्थर जमीन पर पड़े हुए हैं।

जमीन पर वाशिंग मशीन लगी हुई हैं।